यहाँ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसे की वाइट और ग्रीन कलर से पेंट किया गया है और उसके ऊपर फॅब्रिक वली--

कुर्सियां दिखाई दे रही है कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे है और आस पास पेड पौधे दिख रहे है जो हरे रंग के है।

जो काले रंग के है यहाँ एक व्यक्ति बैठ रहा है जिसने की ब्लू कलर का बॅग टांग रखा है और हाथ में पर्पल कलर का झोला है।

यहाँ पर कुछ पेपर दिखाई दे रहे है जो एक बॉक्स के ऊपर रखे हुए है और वहां--

और यहाँ पर सामने कुछ बॉक्स भी दिखाई दे रहे है जो की लाल रंग के है और सफ़ेद रंग के है।

यहाँ एक ठेला दिखाई दे रहा है जोकि नीले और लाल रंग का है और उके टायर दिख रहे है।

आस पास पेड पौधे भी दिखाई दे रही है और लाइटे दिखाई दे रही है।

यहाँ एक बॉल दिखाई दे रही रुमाल दिखाई दे रहे और कुछ कुरकुरे के थैलिया भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।

यहाँ पर भगवन की तस्वीर भी दिखाई दे रही है और उनके ऊपर मालाएं दिखाई दे रही है।

यहाँ एक गाड़ी का शोरूम है जिसपे एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है और उसपर मारुती मोटर्स लिखा हुआ है।

और कुछ डस्टबिन भी यहाँ पर रख --

कुर्ते शर्ट और जीन्स दिखाई दे रही है अंदर की और यहाँ एक सीढी भी दिखाई दे रही है और कुछ लाइटे भी दिख रही है।

इसमें चार गुम्मत भी दिखाई दे रही है और कुछ लाइटे भी यहाँ पे दिखाई दे रही है आस पास वायर दिख रहे है।

और यहाँ पर पेड की पत्तिया दिखाई दे रही है और कुछ फ्लावर भी दिखाई दे रही।

यहाँ पर एक झरना जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे पानी भरा है और इस यहाँ पे पानी हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

और कुछ पत्थर भी दिख रहे है आस पास कई पेड पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे है और कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हुए है।

और एक मग्गे पे इसमे अमृततुल्य लिखा हुआ है और इसके सामने एक --

यहाँ एक मकान है जिसमे की बाहर एक बोर्ड लगा है और उसपर रेनिका अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है।

यहाँ पर माता जी मूर्ति स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे है और आस पास बलून्स लगे हुए है।

जो हरे रंग के है और कई मकान भी यहाँ पे दिख रहे है सामने की और यहाँ --

यहाँ पे कुछ कुरकुरे दिख रहे है सामने की ओर भी यहाँ एक शटर दिखाई दे रही है।

और पास में ही दिवार दिखाई दे रही है जो की काले और सफ़ेद रंग की है और यहाँ से आसमान दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग का है।

आसमान दिखाई दे रहा है जो कि नीले रंग का है और उसपे सफ़ेद बादल भी दिख रहे है और यहाँ पे कुछ पेड भी दिखाई दे रहे है।

घर दिख रहा है जो की हरे और ऑरेंज कलर का है।